और यहां पर ब्लैक कलर का फर्श हो रहा हैं।

यहां पे छोटे बड़े पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारा सामान रैंको में लगा हुआ है।